यहां पर एक ब्लू कलर का कारपेट है जिसके ऊपर बाइक है।

ये एक मेट्रो का स्टेशन है यहां टिकिट्स का काउंटर है।

चार अंकल लोग हैं एक अंकल खा रहे हैं एक अंकल देख रहे हैं।

ये एक छोटा घर है जहां पर एक बेड नजर आ रहा है।